ये बिल्डिंग का रंग जो है ब्लू और भाईट है । आगे एक बाइक और एक साइकिल लगा हुआ और इसमें एक ती चार गेट लगाया गया है।

ये जो है रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक लोग सोये हुए है। एक लोग कुर्सी पे बैठे यहाँ पे दो गेट है जो पीला कलर का और भूरा रंग मिला हुआ।